कुछ पेड़ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है रेड कलर दिखाई नीचे ग्रीन और ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में कुछ रेड कलर दिखाई दे रहा है और बोहत कुछ दिखाई दे रहा है।

मशी-सीन लगे हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे बोहत सारे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ भी षटरस पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ब्लू रेड के है यहाँ पे दीवार पे येलो दिखाई दे रहा है ग्रीन दिखाई दे रहा है और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।